दरवाजे पर बहुत ही सुंदर-सुंदर फूलों से इसे सजाया गया है इसमें दो --

चिड़िया और इंसान दोनों के बिच में बनी हुई ऐसे दिख रही है जैसे सफेद और बहोत ही सुंदर है यहाँ को घर बहुत ही बड़ा और बहोत ही अच्छा दिख रहा है।

यहाँ एक बहुत बड़ा घर मुझे नज़र आ रहा है जिसके सामने में एक पोस्टर लगा हुआ है और यह सफ़ेद रंग का बहुत ही बड़ा घर है जिसके सामने दरवाजे में कई सारे लोग खड़े हुए है।

यह एक बोहोत ही सुन्दर नजारे में दिख रहै लग रहै हैं यह एक जंगल है जो बोहोत ही सुन्दर है जिसके नीचे के जमीन मे कुछ पत्थर और--

यह एक बोहोत ही सुन्दर जगह है जो बोहोत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ का नजारा बहुत ही सुन्दर है जिसके नीचे पानी और आसमान --